ओवरव्यू ओएफ जीचेम्पेंट के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे इसकी सभी यूटिलिटी फाइल्स के साथ जीचेम्पेंट संस्थापित करना
उसके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स और जीचेम्पेंट का मेन्यू बार देखना
जीचेम्पेंट यूज़र मैनुअल उपयोग करना
जीचेम्पेंट के भिन्न यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उपयोग करना
हम जीचेम्पेंट और जमोल एप्लीकेशन के बीच सम्बन्ध भी देखेंगे
जीचेम्पेंट उपयोग करके बनाये गए अनेक स्ट्रक्चर्स पर एक निगाह डालना इसके लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु लिनक्स ओएस वर्जन 1204
जीचेम्पेंट वर्जन 01210
जीचेमकाल्क वर्जन 01210
gchem3डी वर्जन 01210
जीचेमटेबल वर्जन 01210
जमोल एप्लीकेशन वर्जन 1222 इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए आपको हाई स्कूल केमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए और आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी
अब देखते हैं जीचेम्पेंट क्या है160
जीचेम्पेंट ग्नोम 2 डेस्कटॉप के लिए 2डी केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर है
इसमें जीचेमकाल्क gchem3डी और जीचेमटेबल उसके यूटिलिटी विशेषताओं की तरह हैं
जीचेम्पेंट सिर्फ लिनक्स ओएस पर उपलब्ध है
जीचेम्पेंट ग्नोम केमिस्ट्री यूटिल्स में सम्मिलित है
जीचेम्पेंट और इसकी सभी यूटिलिटी फाइल्स सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर प्रयोग करके उबन्टु लिनक्स ओएस पर संस्थापित की जा सकती हैं
सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर पर अधिक जानकारी के लिए कृपया लिनक्स सीरीज़ पर हमारी वेबसाइट पर जाएँ
सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर विंडो में निम्नलिखित यूटिलिटीज़ को जाँचें
जीचेम्पेंट लिब्गकू0 gcu प्लगइन libgcu डीबीजी gcu बिन अब यूज़र मैनुअल पर आते हैं
यूजर मैनुअल संक्षिप्त में बताता है कि जीचेम्पेंट और इसकी यूटिलिटीज़ को कैसे प्रयोग करते हैं
जीचेम्पेंट निम्न लिंक पर यूज़र मैनुअल उपलब्ध कराता है
httpgchemutilsnongnuorgpaintmanualindexhtml जीचेम्पेंट का मेन्यूबार और इसकी सभी यूटिलिटीज़ उबन्टु डेस्कटॉप मेन्यूबार पर प्रदर्शित होंगी
यह जीचेम्पेंट का टूल बॉक्स है
भिन्न भिन्न स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हम अनेक टूल्स प्रयोग करेंगे
करेंट एलिमेंट बदलने के लिए टूल बॉक्स में एक अंतनिर्हित पीरिऑडिक टेबल है
यहाँ टूल बॉक्स में अनेक टूल्स प्रयोग करके बनाये गए भिन्न भिन्न स्ट्रक्चर्स हैं
श्रृंखला के दौरान मैं समझाउंगी कि इन टूल्स का प्रयोग करके अनेक स्ट्रक्चर्स कैसे बनाये जाते हैं160
अब मैं जीचेम्पेंट के उपयोगी सॉफ्टवेयर के बारे में बताउंगी
यह केमिकल कैल्क्युलेटर विंडो है
सर्च बार में मैं टाइप करुँगी c3ह8 और एंटर दबाएं
यह विंडो प्रोपेन का विवरण और आइसोट्रोपिक पैटर्न दिखाती है
यह gchem3डी विंडो है
यह जीचेम्पेंट में बने 2डी स्ट्रक्चर्स के 3डी मॉडल्स दिखाती है
जीचेम्पेंट के नए वर्जन में अणुओं का बेहतर 3डी प्रस्तुतीकरण है
यह जीचेमटेबल विंडो है
इसमें एलिमेंट्स की पीरिऑडिक टेबल और उनका क्रमिक प्रवाह है
जीचेम्पेंट में एक और अनूठी विशेषता है
जीचेम्पेंट में बनाये गए 2डी स्ट्रक्चर्स जमोल एप्लीकेशन में 3डी स्ट्रक्चर्स की तरह देखे जा सकते हैं
स्ट्रक्चर्स को 3डी में देखने के लिए जीचेम्पेंट फाइल्स mol फॉर्मेट में सेव की जानी हैं
जमोल एप्लीकेशन का एक संक्षिप्त परिचय
यह फ्री और ओपन सोर्स मॉलिक्यूलर व्यूअर है
केमिकल स्ट्रक्चर्स के 3 डाइमेंशनल मॉडल्स को देखने और बनाने में प्रयोग किया जाता है
प्रोटीन्स और मैक्रोमॉलिक्युल्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को देखने में प्रयोग किया जाता है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जमोल एप्लीकेशन श्रृंखला पर जाएँ
जीचेम्पेंट श्रृंखला में हम रोमांचक विशेषतायें देखेंगे जैसे टेम्पलेट्स और रेसिड्यूज़ प्रयोग करना
अणु और बॉन्ड्स बनाना
एरोमेटिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑर्बिटल ओवरलैप रेसोनेन्स स्ट्रक्चर्स 3डी स्ट्रक्चर्स देखना
पीरिऑडिक टेबल की प्रवर्ति देखना
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा जीचेम्पेंट के साथ इसकी सभी यूटिलिटी फाइल्स संस्थापित करना
जीचेम्पेंट का मेन्यूबार और इसके सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स देखना
जीचेम्पेंट यूज़र मैनुअल प्रयोग करना
जीचेम्पेंट के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स प्रयोग करना
और जीचेम्पेंट एवं जमोल एप्लीकेशन के बीच सम्बन्ध के बारे में
हमने भिन्न स्ट्रक्चर्स पर भी निगाह डाली जो जीचेम्पेंट में बनाये जा सकते हैं
यह वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
ऑनलाइन टेस्ट देने वालों को प्रमाणपत्र देते हैं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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद